यहा मे एक गांव बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा--

घर जो है तोकु पत और बंबू से बनाए हुआ दिखाई दे रा है।

यहां हमें सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

लड़का जो है बाइक का ऊपर देख के दिखाई दे रहा है।

दुकान में बैलुन भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का सामने स्टील लाइट भी दिखाई दे रहा है।

बस का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है।

यह एक दोकान दिखाई दे रहा है।

ए जगह जो प्लेन से देखाई दे रहा है।

वेन्यूल काऊ स्टेचू का ऊपर आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा।

पेंटिंग में सारे खिड़की दिखाई दे रहा है।

आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहा है।

दोकान का बाहर एक डस्टबिन देखाई दे रहा है।

हाईवे में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है।

यहां में एक क्रिसमन बाबा स्टैचू दिखाई दे रहा है।

यहां आदमी बहुत दिखाई दे रहा है।

और मे सारे कागज दिखाई दे रहे है।

गांव में ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में आदमी लोग भी बहुत दिखाई दे रहा है।

कई लोग फ्लोर में बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

यह आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक सैलून दिखाई दे रहा है।

बाल को लगाने वाला सामान दिखाई दे रहा है।

का स्टेच्यू भी दिखाई दे रहा--

ये एक ऑफिस देखाई दे रहा है।

यहां बहुत साफ सुथरों दिखाई दे रहा है।

यहां में दूर में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां में आदमी लोग हैंडबैग पकड़ के दिखाई दे रहे हैं।